और इसके बाजु में एक फ्रें एए चौकीदार है जो पेड़-पौधे को पानी दे रहा हैऔर उसके ठीक पीछे --